कुछ व्हाइट कलर मे कुछ येलो कलर मे कुछ रेड मे और कुछ ऑरेंज मे दिखाई दे रही हैं।

केची भी दिखाई दे रही है।

दुकान का सेल दुकान का काउंटर --

रोड और साथ में पेड़ नज़र आ रहा है।

पीछे की ओर हमें कुछ ग्लासेस रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र ममं हमें एक जिम दिखाई दे रहा है।

और अपने आप को ढक कर पैदल जाते हुए दिख रहा है एक ब्लू और येलो रंग की बस दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमें सामने की ओर एक कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है।

सामने की ओर हमें एक एयर कंडीशनर दिखाई दे रहा है।

सामने कांच भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

लोहे से दिखाई दे रहा हैं लाल कलर की बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही हैं।

एक छोटा-सा पहाड नज़र आ रहा है।

एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

और मन मन गुंबज का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है।

एक हट बना हुआ दिखाई दे रहा है पीछे एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का |

कुछ लोहे के सरिये हमें दिखाई दे रहे।